सामने एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर जो मशीन है जो वाइट कलर की है एक आदमी खड़ा है।

यहाँ पर सब अलग अलग एक्सरसाइज कर रहें है।

और ऊपर पतरे का कलर वाइट दिख रहा है।

कुछ लकड़ी की बॉउंडरीस बनीं हुई है यहाँ पर हर जगह लाइट्स लगीं हुई है।

सामने एक कार का शोरूम है यहाँ पर एक कार खड़ी है जो की मस्टैंक है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है जोकि पिंक ऑरेंज कलर की दिख रही है एक खिड़की लगी हुई है।

ऊपर एक वायर जा रहे है सामने एक बिजली का खम्बा --